यह मैंन रोड के पास ओवर ब्रिज बना कर लोगो को पैदल यात्रियों के लिये बोहोत ही सुविधायक जनक हो गया है। जिससे --

यह इंजिनियर साहब के द्वारा रोज कंस्ट्रक्शन में अपना भागीदारी दिखा रहे हैं। दे रहे हैं और रोड का मापिकरण चौड़ाईकरण सही ढंग से --

इस समुंद्र के किनारे का नज़ारा देख सकते हैं आप। किस प्रकार समुंद्र का किनारा है उधर कुछ पर्वत भी नजर आ रहा है।

यह सब्डी मंजी है। यहाँ पे सभी प्रकार के सब्जियाँ बहोत ही कम दामों में यानी उचित मूल्य पे दिया जाता है। यहाँ पे सभी ग्राहको के साथ --

दो महिला मित्री आपस में जैसे लग रहा है कि शादी करने वाले हैं। बल्कि इसका सच्चाई कुछ और ही है।